यहाँ पे बाइके लगी हुई है।

प्लेट के ऊप्पर चिकन रखे हुए हैं ल --

हरियाली है पेड़ है पौधे हैं।

जिसमे एक मूर्ति लगी हुई है।

पेड़ नारयल के भी लगे हुऐं हैं।

यह एक शॉप है जिस शॉप का नाम है ए वन एन जी बी ।

इसमें दुकान के बाहर साइकिल लगी हुई है और बैग है।

तोलिया उसने ग्रीन एंड व्हाइट कलर की ले रखी है ऊपर सर कर रखी है उसके हेयर है वो ब्लैक है।

इसमें एक आदमी है जिन्होंने शेरवानी पहन रखी है।

स्टारों से सजावट कर रखी है।